और कुछ बर्फ दिखाई दे रहे हैं जो वाइट कलर के हैं।

और कुछ घर दिखाई दे रही है जो मिट्टी कलर की है और वाइट कलर की है और हल्के रेड कलर की है।

और कुछ आदमी दिखाई दे रहे हैं और एक बड़ा सा कारपेट दिखाई दे रहा है जो ग्रीन कलर का है।

यहां पर मुझे बहुत सारे फूल दिखाई दे रहे हैं जो येलो कलर के हैं और पिंक कलर के हैं और ऑरेंज कलर के हैं और वाइट कलर के हैं।

और कुछ पेड़ दिखाई दे रहे है जो ग्रीन कलर के है।

यहां पर मुझे पहाड़ में बहोत सारे घरे दिखाई दे रही है जो ऑरेंज कलर की है और वाइट कलर की है।

इसमें एक रोड बना हुआ है जो ग्रे कलर का है।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

और एक रोड दिखाई दे रहा है जो ग्रे कलर का है।

और कुछ पेड़-पौधे दिखाई दे रहे हैं जो ग्रीन कलर के हैं।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

और कुछ सीढ़ियां दिखाई दे रही है जो वाइट कलर की है।

और बहुत सारे आदमी लोग पीछे खड़े हुए दिखाई दे रहे हैं।

अ बहोत सारी बलूंस लगे हुए है जो वाइट कलर के है और ग्रीन कलर के है और ऑरेंज कलर के है।